अगल बगल में हमें कुछ कॉलम दिखाई दे रहा है कॉलम में डिजाईन बनाई गई है सामने हम देख सकते है फूल लगा हुआ है जो की लाल कलर का है हरी कलर की पत्तियां है ग्रीन कलर का हमे यह मैदान भी दिखाई दे रहा है।

यह एक अस्पताल दिखाई दे रहा है यह अस्पताल के बहार में कई सारे वेंन खडी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है इसने अंदर से इनर भी पहना हुआ है।

सामने बड़ी खिड़की है खिड़की है सामने देख सकते है के बहुत है खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है नीचे टाइल्स लागि हुई है जो की भोत ग्रीन है कुर्सी टेबल भी यहाँ बहोत व्यवस्तित रहा गया है।

ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है हमे सबसे ऊपर टेरेस पे हमे कुछ छड़ निकली हुई दिखाई दे रही है यहां पे हमे कुछ भी दिखाई दे रही है नीचे हमे कुछ डिजाइन दिखाई दे रही है।

यहाँ पे हमें धार्मिक स्थल का तस्वीर दिखाई दे रहा है जो की अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए रैली निकाल रहे है।

यह एक आदमी जो की एक छोटे बच्चे के बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी शॉप नहीं दिखाई दे रही है छोटी ही शॉप है लेकिन यह पर बहुत अच्छी तरीके से इसको--

इसमें भी कही लाइटिंग दिखाई गई हैं।